इस फोटो में कंपनियां वगैरह दिखाई दे रही हैं यहां पर काफी गाड़ियां खड़ी हुई हैं और बहुत सारे लड़के जिन्होंने व्हाइट --

हर एक दुकान का सेटर बंद है इसके सामने गत्ते वगैरा शायद पार्सल आ रहे हैं।

मजदूर हैं जिनने अपना ड्रेस पहन रखी है हेलमेट वगैरा पहन रखी है एक ट्रक है जो खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है।

तो इस फोटो में हमने देख सकते हैं ये पार्क वगैरा दिखाई दे रहा है जिसमें एक झूला लगा हुआ है और बच्चा इसके--

तो यो फोटो में देख सका शायद यह किसी जू जां का फोटो है तो आप देख सको घने ताड़ के पेड़ दिखाई दे रही हैं।

जो घूमते फिरते नजर आ रहे हैं कुछ हैं जो घासपुस खा रहे बारहसिंगा है।

गमले वगैरह रखे जिनमें पौधे उगे हुए हैं एक गाड़ी है।

इस फोटो में हम देख सकां ये एक मंदिर की तरह दिखाई दे रहा जहां पर काफी भगवानों की--

और बहोत सारे आदमी खडे है बैनर लग रहे है फूल वगैरा है झंडे के बहोत सारे छोटे छोटे टुकड़े है।